व्हाइट फैन भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक ठो पत्ता का घर भी दिखाई देता है।

हमको यहां में एक हॉल दिखाई दे रहा है।

एक में दिखाई दे रहा है।

ये आगे मे एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो में एक डब्बा में बहुत सारा रबड़ दिखाई दे रहा है।

आगे में तीन पर्दा लगा हुआ है एक छोटा सा कबर्ड भी दिखाई दे रहा है।

हम को ये फोटो में एक पिलर दिखाई दे रहा है पिलर में कैलेंडर चिपका के है।

दुकान का शटर बंद करके भी दिखाई दे रहा है।

है हम को एक थू सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यह लड़का का फेस ब्लर किया गया है।

आदमी का फेस ब्लर करके है।

हमको यहां में बहुत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

लकड़ी टूल भी दिखाई दे रहा है।

एक बेंच भी बना हुआ है।

ये फोटो में नदी दिखाई दे रहा है।

आगे में बहोत बड़ा स्टेचू भी दिखाई दे रहा है।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

गोया में एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

कोई हमें बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

हमको यह फोटो में एक फैन दिखाई दे रहा है।

यहां में फ्लोर का कलर ब्राउन है एक ठो दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

हमें एक मैंगो जूस भी दिखाई दे रहा है।